सामने में कुछ लोग आना जाना भी कर रहे हैं।

और चापाकल भी दिखाई दे रहा है उससे लोग पानी पी रहे हैं।

इसमें बहुत सारा टाइल्स मार्बल रखा हुआ है।

काउंटर पे छोटे छोटे डिब्बे में और भी सामान रखा है।

फोटो में एक ठो जिम दिखाई दे रहा है जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है फर्स्ट एनिवर्सरी का।

पीछे मे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस दुकान में बहुत सारा सामान बिक रहा है जैसे कि काजू बादाम अखरोट अंजीर ऐसा सब।

ऊपर से एक वाइट कलर का तार भी आया है।

इसके बाहर बहोत सारा बाइक भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक ठो पंडाल में कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

बगल में लिखा हुआ है टाटा शटील और अंदर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े।

उसने पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है नीचे ब्लू कलर का जींस भी पहना है।

इस फोटो में एक ठो रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा टेबल कुर्सी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक ठो दुकान दिखाई दे रहा है जो कि केक का है और इसका नाम दा माही केक है।